और ऊपर की तरफ बहोत बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए हैं।

यह एक ढाबा है और सामने की तरफ छोटे छोटे दो तीन अशोक के पेड़ दिख रहे हैं।

जिसमें अंदर की तरफ बहोत सारे गुब्बाडे लगे हैं पीले और सफेद।

और पीछे की तरफ लाल कुर्सी रखी हुईं है।

यहां पे कुछ लोग ये कबड्डी खेलते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ लोग ये बैठे हैं।

बीचों-बीच अंदर की तरफ एक शीशा रखा हुआ है।

एक व्यक्ति बॉल को फेंक रहा है और एक व्यक्ति बैट को उठा के बाल को मारने की कोशिश कर रहा है।

पांच की रैक बनी हुई है जिस पर मिक्सी जूसर --

एक डिब्बे के ऊपर टिफिन रखा हुआ है।

यह एक रास्ता है रास्ते में एक जूता भी पड़ा हुआ है दूर की तरफ एक शौचालय है।

एक लोहे का गेट बना हुआ है जो की जालीदार है।

यहां पे सामने की तरफ एक मंदिर--

और इधर साइड पानी पहाड़ से थोड़ा थोड़ा आ रहा है।